यहाँ मुझे फैक्ट्री दिखाई दे रहा है।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

वॉल के छत टेन से बनाया हुआ है।

आ मुझे रूम दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

वॉल में भगवान का फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है।

फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहा है।

जी के ऊपर डिस्को लाइट भी लगा हुआ है।

दुकान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

दो गाड़ी भी पार्किंग किया हुआ है।

दुकान में शीशा लगा हुआ है।

मुझे रूम दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर लैपटॉप भी रखा हुआ है।

दुकान के अंदर बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

लाइट का तार भी दिख रहा है।

एक लड़का बाइसइकल चला कर जा रहा है।

कान के बाहर बाइक भी पार्किंग किया हुआ है।

वो इंसान भी दिख रहा है।

बहोत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा है।

दोनों की फेस भी ढके हुए हैं।

पाइप भी दिख रहा है।

एक लड़का मिर्चा उठा रहा है।

दीवाल में पोस्टर भी लगाया हुआ है।

घर के बाहर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

आदमी भी दिखाई दे रहा है।

कान के अंदर बहोत सारा समान भी दिख रहा है।

स्लाइडिंग बोर्ड भी बनाया हुआ है।

गिलास भी दिखाई दे रहा है।

पीछे रूम दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे रूम दिखाई दे रहा है।

फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।